इसमें दोनों तरफ काली माता की मूर्ति लगी हुई है।

कोर्ट में रोजस रखे हुए हैं कैंडल्स रखी हुई है।

और बीच में कुछ गुलाबी और लाल रंग के फूल लगे हुए--

और वहीं उसके बगल में एक आर_ओ रिपेयर की भी दुकान है।

ये दिल्ली के मशहूर हनुमान मंदिर की फोटो है।

मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए सामान मिलता है।

काफी सारे पेड़ है जिसको देख के पता चल रहा है कि वो अंदर से कितना सुंदर और हरा भरा है।

ये नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति रहा करते हैं।

और ये इमारत बहोत ही शानदार है साथ ही इसके सामने बड़ा सा ग्राउंड है।

इस तस्वीर में हम दुकानों के बहुत बड़े-बड़े पोस्टर देख पा रहे हैं जैसे कि कोविदा स्किल डेवलपमेंट सेंटर --

एंड वही थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं कि वहां पे एक--

ये एक बस स्टॉप की फोटो है जहां पे कई सारी और डीटीसी बसेस खड़ी हुई है।

वैसे मैं दो बुक्स देख पा रही हूं पहली बुक है योद्धा--

ये एक यूनिवर्सिटी की फोटो है जिसमें बैकग्राउंड में बिल्डिंग है।

तीन रंग की है एक ऑरेंज रंग की है एक रेड रंग की है।